ये डांस स्टेप कर रहें हैं शायद यहाँ पे एक टीचर भी मौजूद होंगे। पिछे में ए.सी. लगा हुआ है खिड़की पर्दा सब लगा हुआ है।

ये शायद मेला लगा हुआ है। बड़ा सा मंदिर है। है यहाँ बगल में आदमी सब आ जा रहें हैं। साइकिल सब हैं एक बुड्ढी है जो बहुत ऊपर करके साड़ी पहनी हुई है। बाल पूरा पका हुआ है। हाथ मे लाठी ली हुई है।